यहाँ एक मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पे दिखाई दे रहे है। कांच के शीसे लगे हुए दिखाई दे दे रहे हैं। रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है। गा --